छोटा सा तालाब है तालाब मे पानी भरा हुवा है पानी सतरंगी कलर का दिख रहा है जिस मे नेवी ब्लू कलर है ग्रीन कलर है।

ऊपर आसमान मे भी कलर नजर आ रहा हे तालाब के किनारे पेड़ पौधे हे।

यहां पर गेट दे रखा है तार का यह बहुत बड़ा भवन है यहां पर लाइट है के तार फैले हुए हैं बहुत सारे तार है उसके पास में एक पौधा है ।

पेड़ जैसा और उसके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है खंभे के जैसा लोहे का।

अगर सामने मिला नहीं मैदान के सामने ही मंदिर जैसा बना हुआ है भवन जैसा उसके पास ही रोड है रोड के आसपास घास है घास --

वाइट चद्दर डली हुई है और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुये है बाहर एक बेंच पड़ी है ।

सड़क के सड़क के किनारे पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के पास ही एक छोटा सा सरस्वती माता की मूर्ति लगी हुई है पोस्टर पर।

यहां पर बहुत सारे फल फ्रूट्स रखे हुए हैं खम्भे लगे ठेले लगे हुए है।